एक तस्वीर हैं तस्वीर में एक घर दिखाई दे रहा हैं घर का रंग उजला हैं ।

एक पोस्टर दिखाई दे रहा हैं पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ हैं अगल-बगल पेड़ पौधे हैं ऊपर आकाश हैं आकाश का रंग--

बहुत सारे फूल और पत्तियों के माला सजा हुआ हैं उसके पीछे एक बस हैं बस का रंग पीला कलर का हैं।

ऊपर घर हैं घर का रंग फेस कलर का हैं ऊपर पंखा हैं अगल-बगल लाइट जल रहे हैं किसी किस्म का--

ऊपर लाइट लगा हुआ हैं उसके बगल में एसी लगा हुआ हैं।

लगा हुआ हैं इसके आगे स्कूटी लगा हुआ हैं बहुत सारे--

एक तस्वीर हैं तस्वीर के अंदर--

साड़ी पहनी हुई हैं अंदर बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं येल्लो कलर का घर हैं।

एक तस्वीर हैं तस्वीर में बहुत सारे आदमी ठड़ा हुआ हैं ।

अगल-बगल पेज और पौधे हैं ऊपर आकाश हैं आकाश का रंग उजला हैं ।

येल्लो कलर का पेंट हुआ हैं।

कला कलर का दरवाजा हैं उस पर तला लगा हुआ हैं ऊपर का रंग उजला हैं।

एक तस्वीर हैं तस्वीर में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

एक तस्वीर हैं तस्वीर के नीचे बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

एक तस्वीर हैं तस्वीर में बहुत सारे आदमी योगा कर रहे हैं।

उसके ऊपर एक घर हैं घर का रंग काला हैं इसके नीचे ब्राउन कलर का--

पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ हैं उसके बगल में एक सीढ़ी हैं।

पर आकाश से आकाश का रंग काला हैं ।

एक तस्वीर हैं तस्वीर में--

पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ हैं नीचे बहुत सारे आदमी हैं।

एक तस्वीर हैं तस्वीर में एक फोल्ड खड़ा हुआ हैं फोल्ड का--

एक पुल बना हुआ हैं इसके अगल-बगल पेड़ और पौधे हैं।

ऊपर उजला कलर का घर हैं और अगल-बगल आदमी हैं।

एक तस्वीर हैं तस्वीर--

इसके ऊपर एक अलमीरा हैं अलमीरा में सामान रखा हुआ हैं।

अंदर से ऊपर बाहर से नीचे कुर्सी कुर्सी रखा हुआ हैं।

घर हैं घर का रंग पीला हैं।

आदमी हैं अगल-बगल--

घर हैं घर का रंग उजला हैं उसके अंदर नीचे--

एक तस्वीर हैं तस्वीर में एक बड़ा सा दो पत्थर हैं।

ऊपर आकाश हैं आकाश का रंग उजला हैं ।

एक घर घर का रंग उजला हैं ऊपर लाइट बडा हुआ हैं बहुत सारे आदमी हैं अंदर--

एक तस्वीर हैं तस्वीर के अंदर बहुत सारे आदमी हैं।

तस्वीर हैं तस्वीर के अंदर बहुत सारे घर हैं घर का रंग काला कलर का गेट है उसके ऊपर--

एक तस्वीर हैं तस्वीर में बहुत सारे घर हैं घर का रंग उजला हैं एक मैकेनिक काम कर रहा--

दुकान में तरह-तरह का सामान रखा हुआ हैं उजला कलर का दुकान हैं और ऊपर लाइट लगा हुआ हैं ।

एक तस्वीर हैं तस्वीर के अंदर बहुत सारे घर हैं घर--

हैं और ऊपर नीचे बहुत सारे वृक्ष लगा हुआ हैं।

तस्वीर हैं तस्वीर के अंदर बहुत सारे घर हैं।

एक तस्वीर हैं तस्वीर के अंदर बहुत सारे घर हैं।

ऊपर नीचे आकाश हैं।